कोई मिस्त्री उस्री ओकरा में खड़ा छै कॉपी कागज ले क उधर से जो है से---

एक वह नीचे भी लड़की है यहाँ लड़का -लड़का पर चढ़ा खड़ा हैं।

एक गो कमरा हाय एक लाइन में दो आदमी बैठल हाय आदमी कुच्छो पियल है की करे है देखने में ना पता चले हैएकगो साइड से है इधर उधर में भी है बीच में प्लास्टर ऊलास्तर कराल है।

इ बुझाई छै की कौनो हॉल हैय हॉल के अन्दर जे हैय लाल बत्ती हरीहर बत्ती उज्जर बत्ती ब्लू बत्ती दिखाई पड़य हेय।

हाय बस लागल हाय बस पर छत पर आदमी हाय नीचे भी आदमी हाय।

बैंक के गार्ड वार्ड है इधर पैसा लेने वाला बैठल हाय।

एह उहे दुकान छै जे देखलिए रहे से उ दुकान में ख-आदमी खड़ा हेय एकदोतीनचारपांच छ छ गो आदमी खड़ा हेय। आ ओकरा बाद कुछ दुकान में लिखल ऊखल हेय।

बहुत सारा और छै अ दीवाल पर जे छै फुल गुल काढ़ल हय----

एने तो हैं आदमी बहुत बड़ा एथी लागल है ओकरा में कुर्सी टेबुल लगाल हैं।

हां देखो गंगा जी के कारण नाव चले हाए आ खेवैया सब है उ ले कर क किधरो जा रहले हेय नाव के।

बिल्डिंग है खड़ा है चबूतरा बनल है एगो आदमी है साइकिल पर चढ़ा है आ बीच में कुछ है दुकान ऊकान सब दिखाई पड़ रहले है न ।

हां ई ते बुझाय छे जे कोई स्कूल उस्कुल के फंक्शन हो रहल है एकरा में आदमी स-सरस्वती माता के तरह बैठल हय।